रेड कलर की टी शर्ट पहन रखा है ऊपर रेड कलर का गमछा घेर रहा है।

सामने एक पार्किंग है जिसमें बहुत सारी बाईकें खड़ी हुई हैं साइकिल खड़ी हुई है कार खड़ी हुई है ऊपर व्हाईट कलर की शेड डली हुई है और--